उसका रंग ब्लैक है और उस काउंटर के ऊपर एक कंप्यूटर रखा हुआ--

कैनिस है बहुत सारे पक्के किए गए हैं जिसका रंग ग्रीन और येलो और ब्लू है।

जिसमें बहुत सारे पेड़ हैं जो ब्राउन कलर के हैं।

यहां पे एक टॉयलेट का दुकान दिख रहा है जिसमें व्हाइट कलर के बहुत सारे टॉयलेट हैं।

उनका रंग ग्रे और वाइट कलर है और बहुत सारे बेसिन भी रखे हुए हैं जो भी वाइट कलर के हैं।

शोरूम का रंग व्हाइट और ग्रेन है।

पे एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान दिख रहा है।

दिया का रंग पीला और ग्रे है और रेड है।

उसके अगल बगल बहुत सारे परदे लगे हुए हैं जो ब्लू और वाइट कलर के हैं।

एक बहुत बड़ा मछली है जो व्हाइट और रेड कलर के हैं।

उसके अगल बगल बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

ब्लू और ब्लैक कलर का पेंट पहना हुआ है।

इस भीड़ के पीछे बहुत घना एक जंगल है जो हरा भरा है और इस भीड़ में बहुत सारे लोग भी खडे है।

नीचे बहुत खिड़की लगा हुआ हैं जो शीशे का हैं और एक गेट भी है जो लोहे का है।

इसके ऊपर बहुत सारे भगवान जी का मूर्ति रखा हुआ है और एक आदमी कीबोर्ड से कंप्यूटर के फोटो को सजा रहा है।